ग्रिल भी लगे हुए हैं।

में इस फोटो में किसी पेट्रोल पंप का दृश्य दिखाया गया है।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

ब्लैक कलर की कुर्सी भी नजर आ रही हैं।

चलती हुई दिख रही हैं।

जहां पे बहुत सारी लाइट लगी हुई हैं।

यहां पे बहुत सारी लाइट लगी हुई हैं।

टेबल पर इस क्यू_आर रखा है इधर साइड एक लड़का कंप्यूटर चला रहा है।

चारों तरफ हरे भरे पेड़ दूर दूर तक नजर आ रहे हैं।

कुछ लोग यहां पे खड़े हुए हैं।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

फैन नजर आ रहा है।

एक मॉल के दृश्य दिखाए गए हैं।

गमले लाल कलर के रखे हुए हैं।

गमले भी रखे हुए हैं।

हमें इस फोटो में एक शॉप दिखाई गई है।

हमें इस फोटो में किसी रेस्टोरेंट का दृश्य दिखाया गया है।